यहां पे दुकान दिखाई दे रहा है। नीचे में बैनर जैसा लगाया गया है रोहन चाय सेंटर चाय कॉफी लिखा गया है।

एक यहां पे दुकान दिखाई दे रहा है ई लिखा गया है काउंटर में एरटेल का।

यहां पे फूल लगा दिया गया है।

बेलशीट लाल है थोड़ा काला है और थोड़ा हरा है और सफ़ेद है और भूरा टाइप का है।

यहां पे बाल काटाने का सैलून है बहुत अच्छा सैलून है।

बैठने उठने के लिए कुर्सी दिखाई दे रहा है नीला रंग का उसका है और देखने मे यह बहुत सुंदर लग रहा है और कैमरा भी लगा गया है।

एक यहां पर रोड दिखाई दे रहा है एक टेम्पो दिखाई दे रहा है टेम्पो हरा है उसका शीशा शीशा तरफ पिला थोड़ा--

सुंदर लग रहा है देखने में।